जहा पे लेफ्ट साइड पे एक पेड़ लगा हुआ है और एक गेट है और गेट के अंदर मे एक अ. . बहोत बड़ी बिल्डिंग इमारत नजर आ रही है।